हमारे सामने एक रोड दिखाई दे रहा है इस रोड में काफी सारे लोग हमे आते-जाते दिखाई दे रहे थ जिसके आस-पास हमें कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है इस-इस रोड के अंदर एक बिल्डिंग भी है जिस पर लिखा हुआ है एस_बी_आई स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया --

हमारे सामने एक बगिया दिख रही है इस बगिया में कई सारे हरे-भरे पेड़ -पौधे दिखाई दे रहा है जो की लम्बे-ऊँचे पूरे है इस बगिया में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो की काफी खुश दिख रहा है|

सामने कई सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की काफी लंबी एवं काफी छोड़ी है इस बिल्डिंग के आस-पास हमें कई सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है उसके ऊपर कई सारे ब्रिज भी बने हुए है

हमारे सामने एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है इस बिल्डिंग के बगल से एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ दो लोग जा रहे है के अगल-बगल हमें कई सारे पेड़-पौधे दिख रहे है इस बिल्डिंग के अगल-बगल हमें बाउंड्री दिख--

इस रोड पर कई सारे दुकाने भी है थवीवो मोबाइल का सेण्टर भी है।

हमारे सामने एक समुंद्र दिखाई दे रही है समुंद काफी लम्बा है एव काफी चौड़ा है --